मुझे इस फोटो में एक घर दिखाई दे रहे हैं उसके कलर पूरा व्हाइट कलर का है और मुझे एक क्रॉस भी लगाया हुआ दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारा पहाड़ लोग भी दिखाई दे रहे हैं और ऊपर से धूप भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रहे और उसमें दो चेयर भी दिख दिखाई दे रहे हैं जो की रेड कलर का है।

मुझे बहुत ज्यादा इंसानों लोग भी दिखाई दे रहे हैं और मुझे एक रास्ता भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक सफ़ेद घर दिखाई दे रहे हैं ऊपर में सफेद नीचे में येलो है।